पने में कारण के खंभा दिखाई दे रहा है।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

इसके सामने बहुत सारे जंगल है।

यह तस्वीर में एक दुकान नजर आ रहा है इस दुकान में बहुत सारे डब्बे रखे गया है।

इस दुकान में एक सफेद रंग के टेबल भी नजर आ रहा है जिसमें बहौत सारे लंबे लंबे तार रखे गए हैं।

नीचे में टाइल्स लगाया गया है सफेद रंग के टेबल नजर आ रहा है।

ये घर पत्ते से और बम्बू से बना है।

यह तस्वीर के मूर्ति गणेश के चार हाथ हैं।

और काले रंग के चार चेयर दिखाई दे रहा है।

बाहर से धूप की किरणे भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक डैम नजर आ रहा है इस डैम में बहुत सारा पानी नजर आ रहा है।

चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है।

मंदिर के पीछे में एक नदी भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में मिट्टी और छोटे छोटे ग्रास नजर आ रहा है।

बस में एक पीले रंग के कपड़े पहने हुए लड़के बैठे हैं।

ये तस्वीर में गाड़ी के डिक्की को खुला रखा गया है इंजन के।

इस गाड़ी को कुछ लोग ठेल रहा है।